यह एक बहोत सुंदर बैंकट हॉल है इस बैंकट हॉल के अंदर बहुत अच्छी अच्छी लाइटे लगी हुई है।

और बराबरी साइड में कुछ फूल के गमले भी रखे हुए हैं इस बैंकट हॉल में बहुत अच्छी एक स्टेज भी लगी हुई हैं।

इस फ्रेम के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यह एक कारों का शोरूम है इस शोरूम के अंदर कुछ कारे भी खड़ी हुई है।

बराबरी साइड में एक लोहे का जीना भी लगा हुआ है जिसके ऊपर एक शटर भी लगा हुआ है।

दुकानो के अगली साइड कुछ कारे भी खड़ी हुई है।

इन आदमियों के पीछे एक लटकने का बीम बना हुआ है।

और दुकान के अगली साइड एक लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।

इन टेबल के आगे कुछ कुर्सियां भी रखी हुई हैं और ऊपर ले साइड कुछ गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है।

और कुछ बैलूंन्स भी लगे हुए हैं इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है।

और इस शोरूम में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

यह एक दुकान है इस दुकान के अंदर एक काउंटर पड़ा हुआ है इस काउंटर के ऊपर एक सैनिटाइजर की बॉटल भी रखी हुई है।

इस दुकान के ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है दुकान के बाहरी साइड कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस के अंदर दो काउंटर पड़े हुए हैं।

यह एक टंकी फिटिंग की दुकान है इस दुकान के अंदर टंकी फिटिंग का बहुत सारा सामान रखा हुआ है इस दुकान के अंदर एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

दुकान के सामने कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

कैरम बोर्ड के बराबर साइड में कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।